लग रहा है और पहाड़ी एरिया में इसी तरह की हरयाली लगाये रखना चाहिए इससे काफी ज्यादा सुन्दरता और हवा रहता है।

करना भी चाहिए। .